अलग अलग दिशाओं में खुद को देख रहे हैं।

अपनी हाथों को जोड़ रखा है।

इस तस्वीर में प्रकृति एक जानवर यानी की--

प्रकृति का बहोत ही अच्छा जानवर है और--

जिसके ऊपर नीले कलर का पोस्टर भी लगाया गया है।

तथा उनके बगल से एक बड़ा सा पुल भी गुजर रहा है।

बगीचे का लग रहा है जहां पे--

यहां पर क्रिश्चियन लोग अपनी अरदास और अपने इच्छाओं को मांगते है और अपने भगवान के सामने अपनी गलतियों को--

बहोत ही अच्छे ढंग से किया गया है और रंग बिरंगे फूलों का उपयोग करके किया गया है।

दीवार पर बहोत से चित्र लगाए गए हैं।

यह तस्वीर किसी बगीचे में ली गई है जोकी बोहोत ही सुंदर बगीचा है।

यह दिखाता है कि आज कितनी कला आगे बढ़ चुकी है कला के क्षेत्र में मनुष्य बहोत ही आगे चल चुके हैं।

और बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं।

यह एक हरा भरा केले का पेड़ लग रहा है जो कि बहोत ही अच्छा है केले का पेड़ वातावरण और--

इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर बनाया गया है जिसमें एक बड़ा सा गेट नीले कलर का लगाया गया है।

इस तस्वीर में कुछ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जैसे कि वह मजदूरी कर रहे हैं।